ये एक मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ ईदगाह की तरह लग रहा है जहाँ पर रोज आदमी साल में दो बार आते है एक ईद में एक बकरीद में यहां पे।

यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे फिर बोहोत सारे छोटे-छोटे पौधे मुझे देख रे है और एक टॉवर मुझे दिख रहे हैं।

यहां पे एक कार ने दूसरी कार को लग रहा हैं। ठोकर मार दिया हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैं और यहा पे आप देख सकते हैं इसका कंडीशन अच्छी हैं।

और ये कुसिया लगा हुआ हैं जो की अररिया में हैं। ये मुंह पर का हैं उसका और यहां बैठने वाला चेयर हैं जिस पर एक आदमी बैठे हुए हैं।

और यहाँ मैं देख सकता यहाँ के बहुत कार है और यहाँ पे दो मुझे कार्टून दिखाई पड़ रहे है और एक मुझे कंडीशन गाड़ी का जो है आगे का डिस्प्ले वो आ आगे में है और यह इट इत वीट भी मुझे दिखाई दे रहे है।

ये जो हैं यहां पे और यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है एक ट्रक है और एक उसके बगल में है एक गार्ड है जो कि स्कार्पियो और उसके बगल में जो है वो कार है और वहाँ पे भी देख सकते दो-चार कार लगे हुए है।

बढ़िया जो है एक इंटे की सरक पे लगी हुई और एक जमीन पे लगी हुई है जो की मै देख सकता हूँ पानी भी--

यह एक पेट्रोल पम्प है जो की यहाँ पे एक शटर गिरा हुआ है और यह जो एक शटर खुला हुआ है वो एक मेडिकल है जहाँ से मैं दवाई लिया था और यह जगह बहुत ही खूबसूरत जगह और अच्छा जगह है।